ये आई थिंक एक स्कूल ही है।

और एक गोस्वामी की पिक्चर भी लगी हुई है।

और उनकी अ सहेलिया भी है।

और ये दीवाल है। बहोत बढ़िया है।

ये आई थिंक एक अ एस.डी. ग्रुप ऑफ कोलेज के नाम का एक पोस्टर लगा हुआ है।

और मसाला अच्छा खासा हुई भी है।

और ये पूरा का पूरा ग्रीन कलर का है और इनमे कुछ आदमी दिख --

अच्छा लग रिहा है इनका डांस ।

ऐसा लगता है की यह काफी पुराना हो गया है तो इसकी रिपेयरिंग रही है।

ये स्कूल बहोत अच्छा लग रहा है।

एंड रेड कलर की साड़ी पहन रखी है। गोल्डन कलर का ब्लाउज है।

पता नही कोन-कोन सी बुक होएगी और एक लड़का है। जिस लड़का के पास एक स्टोर रखा हुआ है।

और ये एक मछ्ली को मछ्ली के उपर एक पाइप भी जा रहा है। आई थिंक ये मछलियों को जो काटते है ना तब खून निकालता है तो वो साफ़ कर रही हैं दूकान।

व बेड पड़ा हुआ है। जिसपे की पेशेंट अ उस पर लेटकर आराम करता है।

और जी आपके बल्ब भी हैं। बल्ब भी बोहोत खूबसूरत हैं और --